शेल्फ में बहोत सारे क्रीम्स एंड शैंपू भी रखा हुआ है।

ऊपर में बहुत सारे चौकोज के पैकेट भी रखा हुआ है।

के दोनों तरफ बहुत सारे कमरा भी बना हुआ हैं।

बिल्डिंग का रंग पीला और ब्लू कलर से पेंट किया गया है।

में पीले रंग का चेयर और टेबल भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक सड़क दिखाई दे रहा है सड़क के किनारे बहुत सारे गाड़ी पार्क किया हुआ है।

बिल्डिंग के ऊपर पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस लिखा हुआ है।

लड़की ने अपने मुंह पर मास्क भी पहना हुआ है।

बहुत सारे मल्टी टेबल्स भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे सुंदर सी झरना दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा जर्नी बैग्स भी लटका हुआ है।

खिड़की में कॉटन भी लटका हुआ है।

वाइन शॉप के बाहर एक इंसान खडा हुआ है। वाइन शॉप के बाहर पोस्टर भी लगा हुआ है।

वाइन शॉप की पीले रंग की गेट है।

टेबल के ऊपर दो हेलमेट रखा हुआ है।